और एक बोर्ड लगा है जिस पर वार्निंग लिखी है की पॉकेट मारो से सावधान रहें और वही दूसरी और लिखा है की पेटेंटों को लाइन से देखा जाएगा कृपया शांति बनाये रखें।

बहुत से पुतले खड़े हुए है जिनको कपड़े फहराये गए है शॉप का नाम है जल्लू बाबू एंड के.वी. टावर वही दूसरी ओर लाइट दिख रही है।

इस तस्वीर में एक एक दिख रही है।

वहीं एक ऑटो रिक्शा ले जाता हुआ है बूढ़ी उम्र का आदमी दिख रहा है और उसके सामने की दुकान ज्वेलर्स की दुकान है।

इस तस्वीर में हमें एक युवक दिख रहा है वो-उसके माथे पर तिलक लगा हुआ है पीछे भगवान की प्रतिमा लगी हुई है।

युवक ने काले रंग की शर्ट पहनी हुई है और युवक के सर पर तिलक लगा हुआ है और वह पीछे बहुत सारे लोग --

की तीन बिल्डिंग है सजाया गया है बाहर युवक खड़े हुए नज़र आ रहे है।